यहाँ पे फैक्ट्री है शायद मजदुर भी है मजदुर अपना काम करते है और काम कर के अपना परिवार पालते है मेहनती से काम करते हैं।

बहुत ही बड़ा महल भी है और अच्छा भी --

ऐसा नजारा हम लोग का इधर नहीं है बहुत ही अच्छा है और खूबसूरत भी है ऐसा ऐसा घर बनाने के लिए बहुत ही खर्चा भी होता है|